हां जैसे कि फिसल भिंडा है ऊपर नीचे करने वाला है जो वजनी दार होता है वो है और पैदल चलने के लिए भाग-दोड़ करने के लिए काफी जगह मौजूद है।

जैसे की हम देख सकते हैं की सफेद सा बड़ा सा द्वार है जो राजाओं के वक्त बनाया जाता था एक गांव से दूसरे गांव जाने अ वक्त सत्कार के लिए स्वागत के लिए के ये ये एक गांव है करके।

हरी-भरी सी फसल है और दरबे बगल में हमें घास वगैरा सी फसल नजर आ रही है हम देख सकते हैं यहां पर पानी का तालाब मौजूद है खूब बड़ा ही खूबसूरत नजारा है घर है और कई सारे पेड़-पौधे बड़े खूबसूरत-खूबसूरत ----

जो के सफेद पैंट से बनी हुई है और हम देख सकते है कितना खूबसूरत सा नजारा है।

इस चित्र मे हम देख सकते है की यहां पर कई सारे हमे बड़े-बड़े घर नजर आ रहे है यहां पर एक सफेद घर मौजूद है यहां पर एक विधयालय है और यहां पर एक घर---

घर नजर आ रहे है बड़ा खुला सा मैदान है जो की इधर से उधर तक नजर आ रहा है यंहा पर कई सारे गमले रखे हुए है जिसमे पेड़ लगाए गए है और यंहा पर पार्किंग मे एक कार खड़ी हुई है एक मोटर बायसाइकल और कुछ लोग है।